पीछे के साइड पेड़ वगैरा भी है और साइड में कपड़ा भी है।

जो कि डॉक्टर रवि रंजन के नाम से है।

यह एक जिम हाउस है और यहां पर बहुत सारा व्यक्ति जिम करने आया है।

तोलने वाला एक कांटा भी रखा गया है।

और अह चेयर भी है।

पीछे के साइड में बल्ब जल रहा है और गमला में पौधा भी लगा हुआ--

पर बहुत सारा चेयर भी रखा हुआ है जोकि ब्लैक कलर दिख रहा है।

यह एक रेलवे स्टेशन है और यहां पर बहुत सारा व्यक्ति बैठा हुआ है।

ऊपर में करकट भी लगा हुआ और बाजा भी लगा हुआ और तार भी पास हुआ--

जो कि पप्पू जी पराठा वाले के नाम से है।

दुकान में पंखा भी लगा हुआ है लाइट भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारा किवाड़ भी है जो कि हरा कलर दिख रहा है।

यह एक मंदिर जैसा दिख रहा है और उसमें सीढी लगा हुआ है।

ऊपर से पानी भी गिर रहा है और पत्थर में कजरी लग गया है।

यहां पर बहुत सारा पेड़ भी लगा हुआ है और पत्थर के बीचों बीच पानी गिर रहा है ।

यहां पर बहुत सारा पेड़ भी है जो कि हर कलर दिख रहा है।

और ऊपर में शटर भी लगा हुआ है और शटर के साइड साइड में दो ताला भी है।

साइड में पेड़ वगैरा भी है।

दो व्यक्ति होटल आया है।

एक रूमाल भी है ऊपर में लाइट जल रहा है।

मुंह में लगाने वाला क्रीम भी रखा गया है।

साइड में एक बोतल भी रखा गया है।